कुछ आम के पेड़ लगे हैं । और भी रंग बिरंगे पौधे हैं।

यह एक बड़ा कोंटर का तस्वीर है जिसके बीच में कटा हुआ है उसमें कुछ डायरी रखी हुई है।

ऊपर आम के पत्ते लगे हुए हैं सीलिंग में लाइट जल रही है।

कुर्सी है टेबुल है सीलिंग लाइट्स है नीचे टाइल्स है और भी डेकोरेट के समान लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक दीवाल में ढ़ेर सारा समान लटकाया गया है।

दीवाल ग्रे कलर और व्हाइट कलर का मिक्स है ऊपर न्यू इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है।

पानी के बोतल्स से रखे हुए हैं सामने एक हरा भरा पेड़ का टहनी दिख रहा है एक पोल पे दो पोस्टर लगा हुआ है।

ऊपर झूमर टांगा हुआ है सामने टी_वी लगाया गया है कुछ फोटोज हैं साड़ी टंगी हुई है।

तस्वीर में एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें तीन खिड़की लगी हुई है।

सामने आटा पीसने वाला मशीन रखा हुआ है एक आदमी है एक बड़े से प्लास्टिक में कुछ रखा हुआ है।

यह एक बड़े से मंदिर का तस्वीर है जिसमें तीन द्वार है मंदिर पे मंदिर मंदिर पे मंदिर ऐसा प्रतीत हो रहा है।

यह एक डीप फ्रिज का तस्वीर है जिसका कलर सफेद है अंदर दो केक रखा हुआ है एक पीला एक गुलाबी है।

सामने एक पहाड़ है वो भी नीला दिखाई पड़ रहा है।

रूम में काफी अंधेरा है। और भी सामान रखे हुए हैं। दीवाल का कलर ब्लू है। सीलिंग आसमानी है।

यह एक बड़े से झरने का तस्वीर है जिसके ऊपर से बहुत ही खूबसूरत पानी आ रहा है जिसका कलर सफेद है ।

इस तस्वीर में ढ़ेर सारे आदमी खड़े है ढेर सारे बच्चे बैठे हुए है।

राइट मे कुछ छोटे छोटे बोतल रखे हुए हैं साबुन है ऊपर व्हाइट कलर का बड़ा बड़ा जर्किन रखा हुआ है लाइट जल रही है।

इस तस्वीर मे ढ़ेर सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे वेलकम लिखा हुआ है और कुछ लड़का लड़की खड़े हैं कुछ कुर्सी नजर आ रही है।

छे ग्रिल लगाया गया है जिसका कलर भूरा है।